यहां मुझे एक पंडित दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में मुझे कुछ बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे कुछ पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे लकड़ी के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है।

यहाँ मुझे एक ट्रक दिखाई दे रहा हैं।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक कुर्सी दिखाई दे रही--